मे यहा एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो लाइटे ग्रीन कलर की है। यहा

इस इमेज मे यहाँ ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा है नीचे जल हि जल भरा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सी लड़का लड़की नहाती हुई दिखाई दे रहे।